और लोग काम कर रहे हैं अपना और जा रहे हैं --

इसमें बहुत सारे पटाके दिख रहे हैं।

और बनी हुई हैं।